जिसका रंग पीला हरा और काला हैं।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

और वही और भी बहोत सारी बोरियां रखी हुई है।

जिसने काले रंग के वस्त्र पहने हुए है।

बोट का रंग सफ़ेद हरा और नीला हैं।

गेट का रंग लाल है।

इमारतों का रंग सफ़ेद है।

यह एक बहुत बड़ा मैदान हैं।

जिसमें ये कसरत करने की बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं।

कहीं गुब्बारे भी लगे हुए है।